एक मैदान में पिंक कलर का फूल भी नजर आ रहा है और छोटे छोटे पेड़ भी मुझे दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग के सामने मुझे शीशे की खिड़की नजर आ रही है और तीन बालकनी भी नजर आ रही है।

बिल्डिंग के साथ मुझे एक लकड़ी का दरवाजा नज़र आ रहा है और आस पास में जो हरे भरे पेड़ हैं और कुछ सड़के नज़र आ रही --

तस्वीर में मुझे एक रूम नजर आ रहा है जहां पे मुझे कुछ लाइट जली हुई दिख--

दो लड़के यहां पर मुझे कॉफी पीते हुए नजर आ रहे--

और टेबल पे मुझे एक हेंकी और एक गोगल भी दिखाई दे रहा --

हरे भरे पेड़ और छोटे छोटे झाड़ियां दिख रही हैं यहां पे मुझे कुछ घास नजर आ रहा है और कुछ झाड़ियां भी दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे एक कैफे नजर आ रहा हैं।

हॉल से बाहर मुझे कुछ व्हाइट कलर की कार्स भी नजर आ रही--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

यहां पे मुझे लोहे के पोल भी नजर आ रहे हैं।

ए साथ में मुझे प्लास्टिक के टब और बकेट्स भी नजर आ रही है।

और लिफाफे में कुछ मिर्चियां भी दिखाई दे रही है।

इसके आस पास मुझे हरि भरी घास और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ शॉप्स नजर आ रहीं हैं जो फोन्स की हैं।

यहां मुझे आस पास हरे भरे पेड़ और झाड़ियां दिखाई दे रही है इसके साथ ही मुझे एक होटल है भी नजर आ रहा है।

अह शॉप के बाहर मुझे झाड़ियां नजर आ रही हैं और ये शीशे--

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे--

और एक एल_इ_डी नजर आ रही है।